उसके ऊपर में एक दुकान है उसको पर में पर्दा लगा हुआ है।

एक जगह में शादी हो रहा है जहां पे बहुत सारा आदमी खड़े हैं दो लाइटें हैं।

ये एक कपड़ा का दुकान है जहां पे बाहर पे बहुत सारा काउंटर है काउंटर के ऊपर पूरा शीशा है एक बैग टांगा हुआ है।

सामने बहुत सारे रैक ओक है उसके बगल में भी रैक है।

टेंपो के ऊपर में कार्टून रखा हुआ है पांच आदमी खड़े बैक दिख रहे।

यहां पे बहुत सारे बच्चे जो टेबुल के ऊपर में कुछ सामान बना--

रखा हुआ उसके बगल में बहुत सारे पेड़ पौधा है उसके बगल में एक रोड क्रॉस होने का जगह उसके बगल में एक पूनिया है।

यहां आठ नौ आदमी खड़े हैं उसके बाद एक पिलर भी दिख रहा है ।

एक गेट है जिसपे रेड कलर का कलर लगा हुआ--

दो आदमी का पैर दिख रहा है उसके बगल में बाल्टी उसके अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ है उसके बाद एक गेट भी दिख रहा है।

उसके बाद एक पंद्रह अगस्त का झंडा लगा हुआ उसके ऊपर में बहुत सारा डायरीया रखा हुआ पेन ओन रखा हुआ है ।

यह एक सीढ़ी है जिसमें चट्टान के ऊपर में सीढ़ी बना उसके सामने में चट्टान दिख रहा है बहुत सारा पेड़।

दो चैनल है एक एक पिलर है उसके बगल में एक खिड़की है इधर पिलर उसके नीचे में पैर पोछना है दो गो पैर पोछने वाला--